और ये मुझे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हर जगह पे एक एक फूल फुलवारी रखी हुई है और ये देखने में काफी ज्यादा सुन्दर है बहुत ही सुन्दर है।

कुर्सीयो का कलर नीला हैं और यह इसकी दीवारे सफेद कलर कि है और ऊपर का यह पीले कलर का है।